इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे दो मंजिला जो कि हवा महल दिखाई दे रहा है जिसमें खिड़कियां ही खिड़कियां नजर आ रही है।

शॉप है जिसमें गत्ते की डिबियां डिबियां लगी हुई है और घोड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं यह एक अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है।

जो कि रात का यूनिक दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक--

इस तस्वीर मे मैं देख पा रहा हूं मुझे एक जो की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें डब्बे जो-जो की स्टेशनरी बुक की दुकान है।

पीछे की तरफ में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और भू भाग जो कि ग्राउंड है वो भी साफ सुथरा नजर आ रहा है।